बोहोत सारे पाइप लगे हुए हैं दो बड़ी-बड़ी टंकियाॅं दिखाई दे रहीं हैं और इसमें एक मीटर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हुआ है और यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है जो कि बसों के नीचे भर गया है और यहां पर बहुत सारी--

यहाँ पर एक बाइक्स खड़ी हुई है एक लेडिज दिखाई दे रही है।

यहां हर कलर के कुछ बंधा हुआ है कपड़ा और यहां पर झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं रस्सियां बंधी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक नदी नाला दिखाई दे रहा है उस पर ब्रिज बना हुआ है।

इस फोटो में एक गार्डन सा दिखाई दे रहा है जिसमें हरे हरी घांस लगी हुई है।

ब्लू कलर की लाइटींग लगी हुई दिखाई दे रही है चारों तरफ और तिन बड़ी-बड़ी लाईट लगी हुई दिखाई दे रही हैं।